के अलावा यहाँ पे दो तीन और मकान दिखाई दे रहे हैं। इसका गेट भी दिखाई दे रहा है।

ये बिहार का दृश्य लगता है।

यहाँ पे तीन पुतलो को दिखाया गया है जिसमे से दो बच्चो के पुतले है एक आदमी का पुतला है।

इस तस्वीर में एक सुंदर ग्राउंड को दिखाया गया है जहाँ हरे-हरे और ब्राउन कलर के बहोत सारे घांस लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ पानी भी बिखरा पड़ा है।